लिबरऑफिस ड्रा के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम लिबरऑफिस ड्रा और लिबरऑफिस ड्रा के कार्यक्षेत्र
और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बारे में सीखेंगे
साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे ड्रा फाइल बनाएँ सेव करें बंद करें और खोलें टूलबार्स सक्षम कैसे करें ड्रा पेज सेटअप कैसे करें और बुनियादी आकार कैसे प्रविष्ट करें
यदि आपके पास लिबर ऑफिस ड्रा सूट संस्थापित नहीं है सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके ड्रा संस्थापित कर सकते हैं
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर उबंटू लिनक्स ट्यूटोरियल्स देखें
और इस वेबसाइट पर दिये गए निर्देशों के अनुसार लिबरऑफिस ड्रा सूट डाऊनलोड करें
विस्तृत निर्देश लिबरऑफिस ड्रा सूट के पहले ट्यूटोरियल में उपलब्ध हैं
संस्थापित करते समय याद रखें द्रव संस्थापित करने के लिए कंप्लीट आप्शन का उपयोग करें
लिबरऑफिस ड्रा एक वेक्टर बेस ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है
यह आपको वेक्टर ग्राफिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने की अनुमति देता है
यहाँ ग्राफिक्स के दो प्रमुख प्रकार हैं वेक्टर आधारित ग्राफिक्स और बिटमैप्स
वेक्टर ग्राफिक्स लिबरऑफिस ड्रा का उपयोग करके बनाये और संपादित किये जाते हैं
अन्य बिटमैप या रेस्टर इमेज है
प्रसिद्ध बिटमैप फॉर्मेट्स बीएमपी जेपीजी जेपीईजी और पंग हैं
इमेज़ फॉर्मेट्स की तुलना द्वारा दो प्रकारों के बीच का अंतर समझते हैं
बायीं ओर का चित्र एक वेक्टर ग्राफिक है
दायीं ओर का चित्र एक बिटमैप है
ध्यान दें कि क्या होता है जब चित्र बढ़ते हैं
वेक्टर ग्राफिक साफ है बिटमैप इमेज़ धुँधली हो जाती है
वेक्टर आधारित ग्राफिक्स सॉफ्टवेअर गणितीय सूत्रों के रूप में रेखाओं और वक्ररेखाओं का उपयोग करके इमेज़ेस को संचित करता है
इसलिए जब इमेज़ेस को फिरसे आकार दिया जाता है चित्र की गुणवत्ता अप्रभावित हो जाती है
बिटमैप पिक्सल या एक ग्रिड या एक वर्ग में रंग के बहुत छोटे डॉट्स की एक श्रृंखला का उपयोग करता है
जैसे ही हम चित्र विस्तारित करते हैं क्या आप छोटे स्क्वायर देख सकते हो
ये ग्रीड्स हैं
छोटे डॉट्स प्रत्येक ग्रिड में रंग भरते हैं
आप एक अन्य अंतर देख सकते हो - बिटमैप्स आकार में आयताकार हैं
हालांकि वेक्टर ग्राफिक्स किसी भी आकार में हो सकते हैं
अब जब कि हमें वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में पता है तो यह सीखते हैं कि ड्रा का उपयोग करके उन्हें कैसे बनाएँ
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उंबटू लिनक्स वर्ज़न 1004 और लिबर ऑफिस सूट 334 वर्ज़न का उपयोग कर रहे हैं
नई ड्रा फाइल खोलने के लिए स्क्रीन के ऊपरी बाएँ कोने के एप्लिकेशंस आप्शन पर क्लिक करें
और फिर आफिस पर क्लिक करें और फिर लिब्रियोफिस पर
लिबर ऑफिस के विभिन्न घटकों के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
ड्राइंग पर क्लिक करें
यह खाली ड्रा फाइल खोलेगा
अपनी ड्रा फाइल को नाम दें और उसे सेव करें
मुख्य मेन्यू में फाइल पर क्लिक करें और सेव एएस आप्शन चुनें
सेव एएस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
फाइल नामे फील्ड में वॉटरसाइकिल नाम टाइप करें
नाम देना यह एक अच्छा अभ्यास है जो ड्राइंग से संबंधित है
ड्रा फ़ाइल्स के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ाइल प्रकार डॉट ओडीजी फॉर्मेट ओडीजी है
ब्राउज़ फ़ोल्डर्स फील्ड का उपयोग करके इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करें
सेव पर क्लिक करें
वॉटरसाइकिल नाम से फाइल सेव हो गई है
फ़ाइल नाम और एक्सटेंशन के साथ ड्रा फाइल टाइटल बार में प्रदर्शित होती है
हम सीखेंगे कि इस स्लाइड में दिखाये गये जल चक्र का चित्र कैसे बनाएँ
हमें इस चित्र को चरणों में पूरा करना होगा
प्रत्येक बुनियादी स्तर के ट्यूटोरियल प्रदर्शन करेंगे कि आप इस तस्वीर के विभिन्न तत्वों को कैसे बना सकते हैं
ड्रा ट्यूटोरियल के बुनियादी स्तर के अंत में आप भी अपने आप से समान चित्र बनाने में सक्षम हो जायेंगे
पहले हम खुद को ड्रा कार्यक्षेत्र या ड्रा विंडो के साथ परिचित कराते हैं
मुख्य मेन्यू सारे आप्शन सूचीबद्ध करता है जिसका हम ड्रा में उपयोग कर सकते हैं
बाएँ ओर के पेजेस पैनल ड्रा फाइल में सारे पेजेस को प्रदर्शित करते हैं
जिस जगह हम ग्राफिक्स बनाते हैं उसे पेज कहते हैं
प्रत्येक पेज में तीन परतें हैं
वे लेआऊट कंट्रोल्स और डायमेशन्स लाइन्स हैं
लेआउट लेयर डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होती है
यह वह जगह है जहाँ हम हमारे सबसे अधिक ग्राफिक्स बनाते हैं
हम सिर्फ़ लेआऊट लेयर के साथ काम करेंगे
अब लिबरऑफिस ड्रा में मौजूद विभिन्न टूलबार्स का पता लगाते हैं
ड्रा में मौजूद टूलबार्स को देखने के लिए मुख्य मेन्यू में जाएँ और व्यू और फिर टूलबार्स पर क्लिक करें
आप सभी मौजूद टूल्स की सूची देखेंगे
यहाँ कुछ टूलबार्स के बाईं ओर चेक मार्क है
इसका मतलब यह है कि टूलबार सक्षम है और ड्रा विंडो में दिखाई देता है
आप्शन स्टैंडर्ड एक चेक है
आप विंडो में स्टैंडर्ड टूलबार देख सकते हैं
अब इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड टूलबार को अनचेक करें
आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड टूलबार अब दिखाई नहीं दे रहा है
उसे पुनः प्रदर्शित करते हैं
इसी तरह आप अन्य टूलबार्स को सक्षम और निष्क्रिय भी कर सकते हैं
इससे पहले कि हम जल चक्र चित्र के लिए बेसिक आकार बनाएँ पेज को लैंडस्केप व्यू में सेट करें
ऐसा करने के लिए पेज पर राइट क्लिक करें और पेज आप्शन चुनें
विभिन्न सब आप्शन उप विकल्प प्रदर्शित होते हैं
पेज सेटअप आप्शन पर क्लिक करें
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
पेज़ फॉर्मेट के नीचे हम फॉर्मेट फील्ड देख सकते हैं
यहाँ हम आ4 चुनेंगे जैसे कि यह सबसे साधारण पेपर का साइज है जो मुद्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है
जब आप फॉर्मेट चुनेंगे विड्थ और हाइट फील्ड्स स्वतः से डिफ़ॉल्ट वेल्यूस के साथ भर रहे हैं
ओरिएंटेशन आप्शन के नीचे लैंडस्केप चुनें
पेपर फॉर्मेट फील्ड को दायीं ओर करने के लिए आप ड्रा पेज के एक छोटे प्रिव्यू को देखेंगे
ओक पर क्लिक करें
सूर्य बना कर शुरूवात करते हैं
ड्राइंग टूलबार में बेसिक शेप्स के आगे छोटे काले त्रिकोण पर क्लिक करें
सर्किल पर क्लिक करें
अब कर्सर को पेज पर लाएँ जीटीजीटी बायाँ माउस बटन पकड़कर रखें और खींचें
पेज पर एक वृत्त बन गया है
अब सूर्य के आगे एक बादल बनाते हैं
ऐसा करने के लिए ड्राइंग टूलबार पर जाएँ और सिम्बोल शेप्स चुनें
बेसिक शेप्स के आगे स्मॉल ब्लैक ट्रायंगल पर क्लिक करें और क्लाउड चुनें
ड्रा पेज पर सूर्य के आगे कर्सर रखें
बायाँ माउस बटन पकड़कर रखें और खींचें
आपने बादल बना दिया है160
अब पहाड़ बनाते हैं
हम फिर से बेसिक शेप्स चुनेंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे
हम ड्रा पेज में त्रिकोण प्रविष्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था
अब हमने तीन आकृतियाँ प्रविष्ट की हैं
हर बार अपनी फाइल सेव करना याद रखें जब आप बदलाव करते हैं
यह करने के लिए CTRLS कीज़ एकसाथ दबाएँ
स्वतः से बदलाव सेव करने के लिए आप टाइम इन्टरवल भी सेट करते हैं
ऐसा करने के लिए160 मुख्य मेन्यू में जाएँ और टूल्स चुनें
टूल्स के नीचे आप्शंस पर क्लिक करें
आप्शंस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
loadसेव के आगे प्लस चिन्ह पर क्लिक करें आगे जनरल पर क्लिक करें जीटीजीटी दाहिने ओर के चेक बॉक्सों से सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी बॉक्स को चेक करें और 2 टाइप करें
इसका मतलब है कि फाइल अपने से हर दो मिनट में एक बार सेव होगी
ओक पर क्लिक करें
फाइल जीटीजीटी क्लोज पर क्लिक करके फाइल को बंद करें
मौजूदा ड्रा फाइल खोलने के लिए ऊपर के मेन्यू बार के फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ओपन आप्शन पर क्लिक करें
स्क्रिन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखता है
यहाँ फ़ोल्डर देखें जहाँ आपने अपना डॉक्युमेंट सेव किया है
जिस फाइल को खोलना है उसे चुनें और ओपन पर क्लिक करें
यहाँ आप के लिए एक नियत कार्य है
नई ड्रा फाइल बनाएँ और माइवाटरसाइकिल के रूप में उसे सेव करें
पेज ओरिएन्टेशन को पोर्ट्रेट सेट करें
बादल स्टार और सर्कल प्रविष्ट करें
अब पेज ओरीएनटेशन को लैंडस्केप में बदलें
देखें कैसे आकृति का स्थान बदलता है
इसी के साथ हम लिबरऑफिस ड्रा के इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा लिबरऑफिस ड्रा लिबरऑफिस ड्रा कार्यक्षेत्र और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू साथ ही हमने सीखा160 ड्रा फाइल बनाना सेव करना बंद करना और खोलना टूलबार्स सक्षम करना
ड्रा पेज सेटअप करना और बुनियादी आकार प्रविष्ट करना
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
यह आईसीटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है